ए_टी_एम के अंदर ए_टी_एम निकालने की मशीन लगी हुई है।

लकड़ी के काउंटर में बहोत सारा सामान लगा हुआ है।

जिस पर वजन तोलने का सामान और कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति सफेद शल्ट पहने हुए अपनी कमर पर हाथ रखे हुआ है।

दूकान के अंदर बहुत सारे लकड़ी का सामान बिक रहा है।

एक व्यक्ति सफेद शर्ट में खड़ा हुआ सामान खरीद रहा है।

येह पर कई सारी भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

कई सारी लोहे की मेज और टेबल पड़ी हुई है।